गाड़ी खड़ी है यह गाड़ी रेड कलर की है।

सजाया गया है। यहाँ पंडाल बनाए गए है।

यहाँ बच्चे योगा कर रहे है यह एक आदमी भी है।

यह एक लड़की है यह लड़की स्टेज पे है।